यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कितनी अच्छी जगह है यहाँ कुर्सी है सोफा है टेबिल है और बहुत है यहाँ पर और चीज है टेबिल है टी. वी जैसी है पर्दा में दिखाया जाता है फिल्म --

ट्राई करिये नल बनात है नल बना रही है यहाँ पर बोर या नल करवाएंगे या कुछ चीज ह नल या बोर और यहाँ पर बोर होगा फिर पानी उपलब्ध हो जायेगा --